यह खाने का आइस क्रीम हैं एक प्लेट में हैं तीन चम्मस लगी हुई हैं यह बहुत ही अच्छी दिख रही हैं जिसके ऊपर में कुछ बुरादे हुए हैं।

फोटो में जो दर्शाए गए बहुत पुराना मंदिर दिस दिखाई दे रहा है जिसके सामने में छोटे-छोटे मूर्ति कार लगा हुआ है।

उसको लगाने के लिए गड्डे खोद रहे है और कई लड़की लोग इधर लगा भी रहे है उसमें पानी डाल रहे है बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं।

इमेज में साइमंस पार्लर दिखाया हुई इसमें मसाज कटिंग हेयर कटिंग अनेक प्रकार की कटिंग कटवाई जाती है मसाज भी कराई जाती है।

उसके बगल में छोटा सा कुँआ जैसा दिख रहा जिसमें लाइट चमचमाती आ रही है।